एक स्टेशनरी की शॉप है जहां अलमारी मे बहुत सारे बुक्स रखी हुई है छत पर लाइट लगी है।

एक बिल्डिंग है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक चैनल गेट लगा हुआ है अंदर एक व्यक्ति खड़ा है बाहर की तरफ एक बाइक खड़ी है जिस पर एक पर्दा डाला हुआ है।